पर कार ठीक करी जा रही है अ जिसपे लिखा हुआ कार का नंबर यू_पी_ टू फोर के सेवन एट डबल जीरो |

और टेलीफोन नम्बर भी लिखा हुआ है ब्लू कलर के बोर्ड पे लिखा है एक बड़ा-साऔर मिरर का दरवाजा बना हुआ है एक्टीवा खड़ी हुई है सीढ़िया बनी हुई है।

ऊ दस रुपये सेल लगी हैं यहाँ पर। बोहोत सारी औरतें आदमी नजर आ रहें हैं।

और मैदान दिख रहा है। ये मोबाइल का टावर लगा हुआ है आसपास पेड़ है पुल बना हुआ है। सूरज अ डूबने म पर है।

ये भी फ्लोवर कि दुकान ठेला लगा हुआ यहाँ पर और कार मे मिरर दिख रहा है फोटो क्लिक कर रहे है यहाँ पर रेड कलर कि बहुत ही प्यारी है ओरिजिनल फ्लावर रखे हुए है।

ये भी कहीं का इमेज है। एक घर बना हुआ है वाइट कलर का उसके पास बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं एक नेट टाइप की लगी हुई है और एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है पेड़ के । हरी घास उगी हुई है।

यहाँ पर पत्ता गोभी लग रहा है पत्ता गोभी की खेती की गयी है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्ता गोभी लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे मिट्टी में इसकी उगाई हो चल उगाई हो रही है यहाँ पे ।

एक जिम की इमेज है। जिम के बाहर इक वॉल बनी हुई है। वॉल के बाहर एक पोस्टर बना हुआ है। जिसमें लिखा हुआ है इवोल्यूशन जिम और आदिमानव की पिक बनी हुई है और एक लड़का बनी हुई हैजो अपनी बॉडी दिखा रहा है।

बनी हुई है ऊपर जाने की बड़े-बड़े और मशीन बहुत प्यारे लग रही हैं मिरर लगे हुए हैं आसपास।